ये देख सकते हैं शादी ही वाला घर लग रहा है। यहां मंडप को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है और काफी सारे बलूंस एकदम मंडप को बहुत ही मनाया गया है। लगता है यहीं पर शादी होगी।

ये देखने से से कोई क्लासरूम समझ के कर रहा है यहां पे। लगता है यहां पे प्रोजेक्ट से पढ़ाई होगी खान सर का कोई क्लास चल रहा होगा यहां पे।

एक आदमी जो कि अच्छे पोज में है और फोटो खींचा रहे हैं। और नाव में जाल भी रखा हुआ है। एक आदमी जो कि साइड में मछली लेने आदमी नाव पे बैठा हुआ। अभी दो लोग यहां से नीचे उतर रहे ।